क्या बात है यहां देख के एक नर्सरी की याद आ रही है यह एक नर्सरी का तस्वीर है जिसमें लिखा है संजय नर्सरी --

और यहां बहुत सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं।

और गार्ड को अंदर घुस रहे--

यहां काफी हरी भरी हरियाली है और बहुत सुंदर आसमान है यहां का नजारा बहुत ही अच्छा है।

मंडी के बाहर काफी सारी मंडियां लगी हुई हैं।

सब्जियाँ खरीदते हुए नजर आ रहा हैं।

यहां पे दो शॉप्स दिखाई दे रहे हैं एक गिफ्ट हाऊस है तो दूसरा गिफ्ट गैलरी है।

और कुछ व्यक्ति ट्रेबल कोर्ट में टेनिस खेल रहे हैं।

झील में एक मोटर बोट भी जाता हुआ दिखाई दे पड रहा है।

यहां एक व्यक्ति योग आसन करता नजर आ रहा है जो कि मुंडी के बल लेटा हुआ है और पैर फैलाया हुआ है।